रायगढ़ का ये रायगढ़ का मार्केट है देखो मार्केट में कई सारी दुकाने रहती है कपड़े की जूते की चप--

ये देखो जो हमको को को दिख रहा है ये कॉलेज है ये कॉलेज रायगढ़ का कॉलेज है काफी बड़ा कॉलेज है ओर बहोत प्राचीन समय का है।

ये देखिये ये बाजार है बाजार में काफी भीड़ लगी हुई देख सकते हो जहाँ पे ये देखो --

ये देखो हमको नजारा दिख रहा है काफी अच्छा नजारा देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन हो रहा जो देखो डेकोरेशन काफी अच्छा किया है देखो--

यहाँ पे ये फंक्शन वगेरा हो रहा है और ये देखो काफी लाइटिंग वगेरा लगी है आप देख सकते है यहाँ पर और ये देखिए बहुत ही अच्छा नजारा है।

ये देखो ये नदी है नदी के आइड-साइड कई सारे पेड़ लगी हुई है ओर आप देख रहे है ओर काफी अच्छा है।